यह सड़क काफी बड़ी है। इस सड़क पर बड़े-बड़े घर भी हैं। यहाँ बड़े-बड़े दुकान भी हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे भी दुकान है। यह दुका ई इस सड़क पर काफी छोटी-बड़ी गाड़ियां भी चलती हैं।

यह एक बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग काफी बड़ा है। इस बिल्डिंग पर लिखा है फूड ट्रैक यहाँ पर तरह-तरह के फूड मिलते हैं।

यहाँ पर बहुत आदमी भी खड़े हैं। यहाँ छोटी-छोटी गाड़ी --